यहाँ पे सामने रोड की तरह दिखाई दे रहा है जिसके बाजु में रैलिंग बनी हुई है निचे पट्टी से भी बने हुए है ब्लैक वाइट रैलिंग वाले और सामने --

यहाँ पे काफी सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो एक जैसी यूनिफार्म पेहने हुए नीचे ग्राउंड है सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जि --

यहाँ पे नीचे पक्का फर्श डाला हुआ हैं जिस में पथल लगे हुए हैं बाजु में कार खड़ी हुई हैं उधर भी कार खड़ी हुई हैं सामने भी कार खड़ी हुई है एक सामने --

और पीछे काफ़ी सारे पेड़ दिखाई देओ है और नीचे की तरफ भी घर दिखाई दे रहे है जिनके पीछे बहोत बड़ा पहाड़ है।